यह रूम है रूम में बल्ब जल रहा है उसमें कैमरा लगा हुआ है गेट है गेट पे ताला लगा हुआ है यहाँ पे पोस्टर है पोस्टर पे बहुत सारे आदमी का पिक्चर हैं दिखने में बहुतअच्छा लग रहा है यह बहुत सुंदर दिख रहा है।

सब यही सजाया गया है | माचिस है का डिब्बा है दूध का डिब्बा है बिस्किट है सर्फ़ है साबुन है |